यहाँ पे देखिए कुछ मीटिंग जैसा है।

जेंट्स ऊपर पाऊँ कर के बैठा है लेडीज नीचे पाऊँ करके बैठी है। लेडीज के पैर में कोई स्लिपर वगैरा नहीं हैं। दीवार पे भी छोटे बड़े --

और गेट पे लोखन का दरवाजा लगाया वो भी दिख रहा है दरवा --

और टेबल दिखाई दे रहा है टेबल पे एक बोर्ड लगा हुआ है ये जो की फर्नीचर टाइप का है ब्लू कलर का।

और फ कुछ कलर में दिख दिख रहा है। कुछ ड्रेसिंग टेबल भी दिखाइ दे रहा है यहाँ पे।

काफी ढेर सारा है ये फ्रूट्स का दुकान है।

और एक अ बुजुर्ग बैठा हुआ है।

इसको बहो ये बहोत खूबसूरती से किया भी जाता है।

और स्टेज यहाँ पे बना हुआ है और काफी यहाँ पे लेडीज़ दिखाई दे रही है जो एक जैसा ड्रेस पहनी हुई हैं।

कुछ लोग हैं जो हरमुनिया भी बजा रहें हैं।